ये जगह ढेर सारे बड़े बड़े पेड़ हैं हरे भरे।

गेट लगा हुआ है लोहे का और रेड कलर का गुंबज है।

जिसपे लाइटें लगी हुई हैं और एक छोटा सा हरा सा पेड़ है।

ढेर सारे पेड़ लगे हुए हैं ऊपर और फल फरूट रखे हुए हैं।

लोहे की टीन लगी हुई है।

यह एक बड़ा सा जंगल है जिसमें कुछ हिरण खड़ी हैं।

ढेर सारे बड़े बड़े पेड़ हैं और छोटे छोटे पेड़ है।

जिसकी दीवारों पे पलस्तर नहीं है।

और कुछ प्लास्टिक के जग रखें--

तीन मेजे रखी हुई है व्हाइट कलर की लोहे की।

ये एक होटल है जिसमें तीन कुर्सियां रखी हुई हैं ब्राउन कलर --

और दो लोग बैठे हुए हैं।

छत पे डिजाइन बना हुआ है फिरोजी और वाइट कलर का।

सामने एक घर है और जिसमें एक छोटी सी दुकान है।

त एक बड़ा सा ऊपर बोर्ड लगा हुआ है।

ब्लैक कलर की पैंट ब्लू ब्लू टी शर्ट पेहने खड़ा है।

दीवारो पे कुछ लिखा हुआ है।

और एक पेड़ लगा हुआ है और एक ग्राउंड है जिसमें ब्लू कलर की कार खड़ी है।

सामने एक छाता लगा हुआ है।

तीन पीले कलर के बैनर लगे हुए हैं।

डेढ सारी बाइक खड़ी है।

पहले भी यह फोटो आया था तो मैंने रिकॉर्डिंग की थी तो आपने रिजेक्ट कर दिया था।

आप मुझे बताएं कि क्या इसमें दिख रहा है।

एक पोटली ग्रीन कलर की है और एक पोटली व्हाइट कलर की है।